सामने हमें कुछ हेरन नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक कॉलेज नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

एक आदमी ने काली शर्ट पहनी है।

इस चित्र में एक गाड़ियां दिख रही हैं।

एक सफेद शटर नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक लाल बस दिखाई दे रही है।

इस चित्र में मयूर हॉटेल दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में दो गधे दिखाई दे रहे हैं।

जो लकड़ी की बनी है एक पत्थर दिख रहा है एक फुटबॉल दिख रही है।

चेस के बोर्ड जैसा यहां फर्श पे बनाया है।

इस चित्र में आरके फार्म दिखाई दे रहा है काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में सूखी घास नजर आ रही है।

काफी सारा चांदी का आइटम नजर आ रहा है।

ऊपर कुमार किराना लिखा हुआ है।

इस चित्र में एस_बी_आई ऑफिस दिख रहा है बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

इस चित्र में एक मंदिर बना हुआ है मंदिर पर नीले रंग का गुंबद है।

एक डब्बा रखा हुआ है पार्सल का एक टी_वी दिख रही है।

इस चित्र में एक ऑफिस नजर आ रहा है।

एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है एक शटर दिखाई दे रहा है।

काली कुर्सी और स्टूल दिख रहा है।

सामने अलमारी में कुछ ट्रॉफियां जमी हैं।

बहुत सारी कुर्सियां और टेबल रखे हैं।